चेयर्स हैं लाइट्स बहोत सारी हैं कंच के कंच की विंडोज हैं।

पीछे पहाड़ और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप के पास वॉशरूम दिखाई दे रहा है।

सामने भी एक बिल्डिंग सामने भी एक मंजिल दिखाई दे रही है।

यहां पर एक चर्च जैसा प्रतीत हो रहा है।

यहां पर एक दुकान दिखाई जा रही है जिसमें एक पुतला खड़ा है कपड़े पहने हुए।

एक छोटी है और बहोत सारे आदमी हैं चार आदमियों ने कुछ डंडे पकड़े हुए हैं जिसके बीच में एक बड़े बुजुर्ग आदमी हैं।

और यह स्क्रू करने वाली मशीन भी रखी हुई है और बड़ा सा नीले रंग का गोल गोल स्प्रिंग जैसा--

यहां पर हरी हरी घास दिखाई दे रही है जिसके सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और इसमें उपर लगे हुए तार दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब रखे हुए हैं।

और यहां पर नदी के अंदर पत्थर नजर आ रहे हैं।